ये एक रेल गाड़ी है जो कि रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और यहाँ ये पटरियां दिख रही हैं कुछ खंभे दिख रहे हैं और ये बोहोत ही पुरानी लग रही है।

अ आई थिंक ये कोई बजार टाइप की है और यहाँ पे खंभें हैं तार है और यहाँ पे लाइट जल रही है और कुछ लोग यहाँ पे सामान खरीद रहे --

यह एक रेड कलर की कार है एक व्हाइट कलर की है और एक ग्रे कलर की कार है और ये बनने के लिए आए हैं यहाँ पे और ये बोहोत ज्यादा डैमेज हो रखी हैं।

ये एक नदी की फोटो लग रही है। यहाँ पर बाढ़ आई हुई है। यहाँ पर ब ढ़ेर सारा पानी ल लगा भरा हुआ है और यहां पे लाइट का खंबा भी है जो कि --

ये किसी स्कूल कालेज का व्यू हैं जो अब जोकि खाली पड़ा हुआ है| यहाँ की बहोत ही अच्छी है और यहाँ ये देखने में भी बहोत अच्छा लग रहा है| आई थिंक ये कॉलेज है या स्कूल है|

ये एक गार्डन से फोटो क्लिक करी गयी है जो कि देखने में बोहोत ही प्यारा लग रहा है। और ये बोहोत ही ओसम --